पेरोग्राम बोहोत बड़ा है। नीला पर्दा है पोस्टर है। लड़ एक लड़का झंडा लेके खड़ा है। पंखा चल्ला है।

ए एक किताब की दुकान है। जो आदमी कित किताब लेकर फोटो खिंचवा रहा है जिसका हाथ में गड़ी है जिसके --

यह एक आदमी दरक बो रहा है और इसके हाथ में मट्टी है।

और उस उसका लोअर काला है। उस उसकी श्श शेर्ट नीली है। बलब जल रहा है। पंखा चल रहा है। अम्म पीला --

ये एक जिम है। यहां बोहोत अच्छा उम्म सामान है।

यह किताब की दुकान है। यहां एक औरत चाय पी रही है और तीन बच्चे हैं।

यह एक किताब की दुकान है। यहां नीली किताब रखी है और जी हरी भी है। गुब्बारे नीले --

नीला है पीला है हरा है लाल है मम्म लाल कलंग की कुर्सी है और एक आदमी बैठा है।

यह एक ए.टी.एम. है। ए.टी.एम. पर भी एक घर बना है।

यह एक पार्क है जहां बहोत से बच्चे गांव के खेलने आते हैं।

और अंदर एक आदमी है। नीचे मेज बिक बिछ रही है लाल कलर की है एक हरे कलर की है और सजावट अच्छी है और --

यह एक पुल से ये सड़क का फोटो है। यहाँ एक ऑटो जा रहा है एक आदमी ऑटो के अंदर बैठा है।